पेड़ भी लगे गए लगाए गए हैं जिसको अच्छी तरह से काट कर अच्छे डिजाइन में परिवर्तन किया गया है।

जिसमें ये व्यक्ति अपनी स्कूटी खड़ी करके सामने की ओर देख रहा है।

देखने पर ऐसा लग रहा है कि काफी गिलासे एक के ऊपर एक रखी गई है जो की स्टील की है।

ओपनिंग के बारे में बताया गया है और हेयर के अलग अलग कटिंग के बारे में बताया गया है।

इसमें कोई तरह गेट दिखा फोटो दिखाई दे रहा है जोकि खुला है लेकिन--

और लाइट भी काफी प्यारी लग रही है जोकि पीले कलर की है और कुछ अदर प्रॉडक्ट भी है जो भी बहोत शानदार और अच्छे लग रहे है।

कांच की कुछ अलग कांच पर कुछ अलग फोटो लगाए गए हैं जो फोटो स्टिच भी करते हैं लेमिनेशन भी करते हैं।

ये किसी पार्क का फोटो है जहां पर कुछ आगे पीछे पेड़ दिखाई दे रहे है नीचे की ओर दूब लगी हुई है और पेड़ों पर --

और आसमान भी काफी साफ दिखाई दे रहा है और आगे एक व्हाइट कलर का छोटा मकान या हाउस भी दिखाई दे रहा है।

ये विद्या इंस्टिट्यूट है और दो व्यक्ति भी खड़े हैं और एक बाइक भी है।

डस्टबिन भी दिखाया गया है रेड कलर का रिबन भी लगाया गया है।

देवी देवताओं या भगवान के प्रति कुछ मूर्तियां दिखाई दे रही है पहले नंबर है जो ऊपर मोर बना हुआ है ये एक सिल्वर कलर --

और यहां कुछ बीच में ये बीच में जो खंबे लगाए गए हैं और इधर भी कुछ --

साफ साफ दिखाई दे रहा है गुलाब के फूल भी हैं कुछ ऊपर दीवार पे तस्वीरें भी उन्होंने अपनी लगा रखी हैं।

कुल मिला के सारा कुछ टेबल वगैरा एकदम सब अच्छा है।